यहां पर एक शॉप है यहाँ पर बहुत सारी बिसलरी और कोल्ड्रिंक्स की--

आसपास और भी बहुत सा सामान पड़ा हुआ है कुछ चेयर रखी है लोहे का बहुत सा सामान है ईंट की साइड में दीवार है साइड में ही--

और इन पेड़ों के पीछे की तरफ बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है घर बने हुए है।

कुछ खंभे हैं जिन पर भी कुछ अलग अलग पोस्टर्स को लगाया गया है कुछ पेड़--

यहाँ पर एक रेलवे प्लॅटफॉम हैं और इस प्लॅटफॉम पर ब्लू कलर की एक ट्रेन खड़ी हुई है।

इन टेबल्स के नीचे की तरफ भी कुछ दो व्हाइट कलर के कंटेनर रखे हुए हैं।

जो सभी रेड कलर की है और बीच में से एक रोड गया है सामने एक रेड कलर की कार खड़ी है।

आसपास में कुछ रूम बने हुए हैं जहां कुछ चेक्स के टाइल्स लगी आसपास बहोत से लोग भी है।

और कुछ लाइट्स लगी हैं यहां जो पिंक और वाइट कलर की है।

कोहरा छाया हुआ है और ये जो बड़े पेड़ है इनमें कुछ लाल कलर के फूल लगे हैं कहीं कहीं पे।

यहां पर कुछ शॉप है जो प्ले स्टोर के नाम से है फैशन वर्ल्ड के।

यहां पर पूरा जंगल है और जंगल में ये व्यू भी बहुत ही प्यारा लग रहा है जंगल में एक झोपड़ी बनाई गई है।

सामने की तरफ कुछ सफेद और गोल्डन कलर की सीढ़ियां बनी हुई है।

पर एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पर बहुत सारे रेड कलर के ट्रक्स खड़े हुए हैं कुछ ऑटो खड़े हैं कुछ बाइक खड़ी है सामने--